यहां पत्थर से भी --

यहां सब कैमेस्टर की दुकान लग रही है।

यह बहुत सुंदर दुकान दिख रही है।

यहां बहुत से आदमी खड़े हैं मैदान में।

दे रहें हैं बहोत बड़ा ग्राउंड खाली--